यह एक बगीचा है जिसमें बहुत सारे हिरन हैं लगभग एक दो तीन चार आठ से ऊपर हिरन है यहाँ पर बहुत सारी पेड़ है।

बगल में रास्ता भी है काफी पेड़ सूख गए हैं बगल मे --

जाल भी लगाया हुआ है हिरन ब्लैक कलर का भी है वाइट कलर का भी है जिसका रंग ब्राउन भी है हल्का वाइट है सफेद है।

लड़के भी खड़े हैं जो एक शिल्पी ले रहा है एक खड़ा हुआ है बाकी सब एक टावर भी है रोड भी है खाली है सब चीज।

बक्सा है फिल्टर मशीन का बक्सा है जिस पे फोन करने वाला भी --

बच्चे बैठे हुए हैं बहुत सारे फैन भी है लगभग दो बोर्ड है इसमें लगभग बहुत सारे चेयर भी हैं बहुत सारी लड़कियाँ भी बैठी हुई हैं बहुत सारे --

बाकी सब में कंप्यूटर रखा गया है इनकी कलर है जो वाइट कलर की है आगे सब नल भी है जो नल भी व्हाइट कलर का है बगल--

बहोत सारी कार्टूने हैं दुकान के अंदर बहोत सारी चेयर भी है जो चेयर रेड रेड कलर की है ऊपर पोस्टर भी --

एक वाइट कलर है रेड कलर है ब्राउन कलर है बाकी सारे भी रियलमी का भी फोन हैं इसमें बगल में कवर भी है इसका ग्लास भी है उनचास रूपया --